यह एक पंडाल है जो की जिसमे माता जी बिठाए गए है।

यहाँ पे मकान है मकान बनने की तैयारी की जा रही है नीव भर रहे है नीचे से काफी सारी ईटें बिछा दी है तीन लोग है जो खड़े हो कर काम कर रहे है।

सरिये है और बैलून से डेकोरेशन किया है लाइटस जल रही है।

नाम लिख हुआ है ए_ टी बैंक का--

ये एक जिम है जिम में काफी सारी मेट्स रखी है नीचे ब्लैक और रेड कलर की।